पत्थरों को छु रहे है और पत्थर बहुत ही बड़े बड़े हैं और कुछ नुकीले से पत्थर दिखाई दे रहे है और रोशनी सी आ रही है सूरज की किरणे इधर पड़ रही है।